रोड ब्लैक कलर की जिस पे वाइट कलर की लाइन है और रेड कलर की एक कार है।

यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज हैं और वो लोग खाना खा रहे हैं एक दीदी उनको खिला रही है।

और ये लोग बैठ के कैमरामैन भी है और--

और यहाँ पे कुछ लोग बस में बैठ रहे हैं वेट कर रहे हैं दूसरी बस --

ब्लू ग्रीन पर्पल ऑरेंज येलो रेड ।

उनके ब्लैक कलर और ब्राउन कलर की जैकेट हैं उन्होंने वाइट कलर जीन्स पहन के रखे ।

और चेयर में कलर्स है ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज ।

घर हैं पेड़ हैं और कुछ लोग और नदी हैं।

ये ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे बहुत सारे सामान रखे यहाँ पे मैगी है।

ये कुछ टेबल है जहां पे कॉफी कप है काफी रखी हुई है एक डस्टबिन है।

टीशर्ट पहना है नीचे ऑरेंज कलर का पहना हुआ है और--

यहाँ पे कुछ पेड़ है जो इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स है यहाँ पे घर है वाइट कलर का।